एक इंग्लिश और एक दूसरी कोई दूसरी भाषा है ऊपर कुछ पेंप्लेट पे कुछ समान चॉकलेट वगैरह दूध जूस वगैरह की फो फोटो टंगी हुई हैं .

यह एक ए_टी_एम की फोटो दिख रही है यहां पर एक पुलिस वर्दी मे एक आदमी खड़ा है बाकी दो तीन आदमी ऐसे खड़े है जोकि मशीन वगैरा मशीनों के आगे खड़े पीछे--

बंधा शटर खुल्ला ए सी वगैरह भी लगे हुए हैं.

यहां पर बिल्डिंग दिख रही है और उनके बाहर पेड़-पौधे लगे हुए हैं नीचे मिट्टी ही मिट्टी है कोई मैदान सा है यहां पर शायद दो-तीन आदमी खड़े हैं बिल्डिंग में में --

यहाँ एक मैदान है जहां पर कुछ झुल्ले वगैरह--

और वहाँ वहां पर बाहर घास और प पेड़ पौधे उगे हुए यहां पर दो तीन आदमी व औरत खड़ी हैं और एक आदमी चेयर पर बैठा है.

होता है और बहुत सुंदर लग रहे हैं दिखने में पीछे कुछ सेट है.

रंग बिरंगे यहां पर बड़े बड़े बर्तन से पड़े हैं जिसमें सब लोग कुछ ना कुछ भर रहे हैं।

यहां पर एक जाला सा बना हुआ जाला में पेड़ पौधे लगे हुए हैं तथा यहां पर कुछ टंगा भी हुआ है बल्ब की टाइप का।

यहां पर बहुत सारे पेड़-पौधे उगे हुए है तथा यहां पर मिट्टी भी पड़ी है और नीचे हरी-हरी कुछ घास भी यहां पर फैली हुई है।

यहाँ कोई सड़क है जिसके आस-पास से बहुत सारे पेड़-पौधे लगे होते हैं यहां पर कुछ--

यहां पर तीन चार अलमारी पड़ी हैं एक पिंक कलर के एक ब्लू कलर के और एक अलमारी में कुछ सामान पड़ा है।

यह एक सैलून लग रहा है यहां पर पांच चेयर्स पड़ी है उनके सामने मिरर है तथा यहां पर--

एक गर्ल की फोटो लगाई गई है तो यहां पर ऊपर दीवार पे भी बहुत सारी पिक्चर्स वगैरह टंगी हुई है यहां पर भी बैलेंस वगैरह शीशे में नजर आ रही हैं.

तथा उसको अलग अलग डब्बे में लगाया गया हो हर तरफ वो चीज बहुत सुंदर सुंदर गया है।

दो तीन टैंकिस पड़े हैं यहां पर सबके छत पर अलग अलग व्यू आ रहा है यहां पर एक झंडा भी लगा हुआ हैं।

उसके आसपास से बहुत सारे कर्टेंस सजाया हुआ है.

पेड़ों के उम पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं यहां पर हर तरफ हरी हरी घास वगैरह ही फैली हुई है मिट्टी भी है यहां पर जे --

यहां पर चारों तरफ हरी घास ही घास फैली हुई है तथा यहां पर ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे भी लगे हुए यहां पर--

यहां पर एक नंबर पर लिखा हुआ कोई बिका सूट हुआ अदला बदल नहीं होगा अपनी कीमती समय व्यस्त ना करें।

तथा ऊंची-ऊंची बिल्डिंगों के सामने बहुत सारी बसेस और ऑटोस यहां पर सभी पर खड़े हैं।

अंदर सा घर बना हो रहा उसके बाहर दो गाड़ियां खड़ी हैं यहां पे एक आदमी भी--

ये है कोई नदी है यहां पर बहुत सारे आदमी व औरते--

और यहां पर सभी आदमी अपने-अपने काम में मस्त होकर अपना काम कर रहे हैं।

के पास खड़े हैं यहाँ पर कुछ आदमी बैठे भी हैं यहाँ पर--

यह कोई चीज-चीजों की दुकान लग रही है जिसके ऊपर एक--

बाइक व स्कूटी खड़ी है यहाँ पर बहुत सारे आदमी बैठे हैं यहाँ पर--